तस्वीर का भी दिखाई दे रहा है यहां एक डॉ--

इस फोटो में हमें लड़का फोटो दिखाई दे--

पंडाल में कहीं पर भगवान जी की मूर्ति में --

ये पाइप को पकड़ के रखा है और एक व्यक्ति साइकिल ठीक कर रहा है।

फोटो में हमें गुड मॉर्निंग कैफे का फोटो दिख रहा है।

नेक्स्ट है ऑक्टोपस ऑक्टोपस को हिंदी में ऑक्टोपस कहते हैं ऑक्टोपस ।